कुछ व्यक्ति चेयर पर बैठे और कुछ व्यक्ति नीचे बैठे हैं।

यह पिक्चर एक स्कूल की है जिसके पीछे स्कूल बस खड़ी हुई है और स्कूल की बिल्डिंग अपनी--

एक व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है सामने और यहां पर--

एक अ गणेश की तस्वीर अ रखी हुई--

इसमें काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं कुछ औरतें तो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं यहां पर पंडित जी सामने खड़े हुए हैं।

इसमें बाहर बोर्ड भी लगा हुआ हैं इसके बाहर एक बाल्टी रखी हैं जो कि ब्ल्यू कलर की हैं।

इस पिक्चर में एक रूम है।

के अंदर एक चेयर है एक बेड है और एक टेबल है इसमें लाइट जला रखी है।

अह जो कि सवारियों को बैठने के लिए हैं इसमें एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है जो कि सिर पर--

इस पिक्चर में काफी सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कि बैठे हैं कुछ लोगों ने अपने गले में--

दिखाई दे रहा है शोरूम के अंदर एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है।